छोटे छोटे जंगल भी है आप लोग देख सकते हैं गाइज एक नाव उल्टा है।

बहोत छोटे छोटे यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लाइटें लगी हुई है आप लोग देख सकते हैं।

तो हेलो भाइयों आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं बहुत सारी झोपड़ी है बहुत सारा आदमी फोटो खींचा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं गाई --

यहां पे गनेश भगवान की छोटा सा मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।